जैसा की मै देख पा रहा हु मुझे यहाँ पर एक मूर्ति दिखी रही है ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है इसका रंग कॉपर है यहाँ पर जमीन का रंग भूरा है पेडो--

जैसा की मै देख पा रहा हुमुझे यहाँ पर एक कंकाल दिख रहा है जो सफेद रंग का है यह पर पर्दा लगा है जो पीले रंग का है दीवाल का रंग आसमानी है।

पेड़ लगे हुए है पेड़ सूखे है तथा किनारे - किनारे हरे - हरे पेड़ लगे हुए हैं जो छोटे तथा बड़े दोनों ही प्रकार के --

कार जो है की ओह स्लेटी रंग की है और जमीन का रंग काला है छोटे-छोटे फुल लगे है यहाँ पे क्यारी बनी हुई है हरे पत्तो की छोटी-छोटी किनारे-किनारे बनाई गयी है। --

जैसा की मै देख पा रहा हूँ मुझे यहाँ पर एक पुल दिख रहा है जो सफ़ेद रंग का है यहाँ पुल के निचे पानी भरा है जो बहुत दूर तक दिखाई देने वाला है पानी का रंग सफ़ेद --

जैसा की मै देख पा रहा हूं मुझे यहाँ पर एक कार दिख रही है जो स्लेटी है यह खुली हुई कार है इसके पहिया पहिओ का रंग काला है जमीन का रंग भूरा है।

हैं यहाँ पर कुछ बाइक खड़ी है बाइक का रंग काला है।

जैसा की मै देख पा रहा हूँ मुझे यहाँ पर एक दरवाजा दिख रहा है जो काले रंग का है ये दरवाजा जालीलूमा है यहाँ पर इसकी छत भी जालीलूमा है जो --

औजार है जोकि काले रंग का है वह औजार के द्वारा --

कार को बना रहा है यहाँ पर एक मशीन है मशीन का रंग लाल है जमीन का रंग भूरा है।

सजावट है यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे मोती जो सफ़ेद रंग के है दिवार का रंग काला है।

दीवार का रंग भूरा है तथा इसपे कुछ सफ़ेद रंग भी है एक जाली लगी है जो काले रंग की है।

पेड़ दिख रहा है पेड़ की पत्तियां सुखी हुई है यहाँ पर कुछ घास दिख रही है जो हरे रंग की है पानी का बहाव तेज है।

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ मुझे यहाँ पर केक दिख रहा है केक का रंग भूरा है तथा यह केक पर बहुत सारी चॉकलेट भी लगी है यहाँ पर बहुत सारे बिसकिट भी रखे --